इसमें मुझे लाइटें दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे किराने का दुकान दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे एक दुकान दिखाई दे रही हैं।

इसमें मुझे लोहे की रॉड दिखाई दे रही है।

इसमें मुझे दो काफी के मग दिखाई दे रहे हैं।

इसमें मुझे ढोलक दिखाई दे रही है।

इसमें मुझे लाइटें दिखाई दे रहे हैं।

इसमें मुझे फूलों की सजावटें दिखाई दे रही है।

इसमें मुझे पंडित जी दिखाई दे रहें--

इसमें मुझे एक बड़ा गेट दिखाई दे रहा है।

इसमें मुझे लाईटे दिखाई दे रही है।

इसमें मुझे टेबिल्स दिखाई दे रही है।

इसमें मुझे बहोत सारे घर दिखाई दे रहे हैं।

इसमें मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।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

इसमें मुझे कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा हैं।

इस फोटो में मुझे मेला लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इसमें मुझे बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।